रोड पर एक गेट बना हुआ है जो खुला हुआ है रे रोड के किनारे एक टेंट लगा हुआ है।

हॉल में कुछ शीशे दिख रहे हैं।

ग्राउन्ड के चारो तरफ गमले में छोटे-छोटे पौधे लगाया गये हैं। ग्राउन्ड के बहार रास्ता दिख रहा है।

बिल्डिंग के सामने खाली मैदान दिखाई दे रहे है। मैदान --

और बिल्डिंग के बीच में कुछ छोटे-छोटे पेड़ पौधे लगाये गए हैं।

यहाँ पर एक नाव दिख रहा है।